यह इंडिपेंडेंस डे के दिन का बच्चे कलर कलर ड्रेस में डांस कर रहे हैं ऊपर ऑरेंज ग्रीन एंड व्हाइट कलर का--

दो लोग खड़े हुए हैं दो नीचे वाइट कलर का बजट नीचे है और जमीन को अ सादा अ सीमेंट का जमीन है।

ग्रीन और ऑरेंज कलर का पेंट मारा गया है एक घर की तरह है ये तीन डोर बाहर लगा है और एक-एक कमी जा रहा है ये ऑरेंज कलर का।

ये एक मेडिकल स्टोर है यहां पर वुड का शेल्फ बनाया गया है और ग्लास डोर डाला गया है दो तरफ खुलने वाला।

ये एक वूमेन की बुटीक है यहां पर अह बहुत से अह लाइन में बहुत से--

ऑरेंज कलर का फूल डाला हुआ है यहां का टेबुल को पिंक कलर का बेडशीट अह कपड़ा ओढ़ाए हुए और ऑरेंज एंड येलो फूल को सजाया गया है एक आदमी --

पगड़ी पहना हुआ माइक पर खड़ा है पीछे पे बहुत से लोग खड़े हुए हैं पीछे अब्दुल कलाम का फोटो की तरह एक फोटो है।

ये एक हॉस्पिटल की तरह रग लहा है यहां पर राउंड राउंड की तरह डाला गया है और टाइल्स लगाया गया है।

और यहां पर सीटिंग है। बहुत से लोग औ मर्द और औरते बैठे हुए हैं और कुछ लोग देख रहे हैं।

अब लोग बैठे है बैठ रहे है एक आदमी फोन पर बात कर रहा है पीछे लाइट ग्रीन कलर का पेंट है और पिंक कलर का पेंट है और खंभा में गोल्डन कलर है।

कुछ औरतें उस मंदिर के मर मंदिर की तरफ जा रहे हैं और वो सारी पहने हुआ जा रहा जा रहे--

और ये प्रूव्ड़ डी_एम_एम_बी मेन्स ट्यूशन है यहां पर इनका ईमेल आईडी और फोन नंबर रख लिखा गया हैं।

निखिल बेहरा मुकुट स्टोर करके लिखा गया है यहां पर उनका अ एड्रेस और फोन नंबर लिखा गया है।

ये स्कूल है यहां पर अ ब्राउन कलर का बैंच और ब्राउन कलर का टेबल डाला गया है।

ये एक रेस्टोरेंट है यहां पर ग्लास का टेबल बिछाया गया है यहां पर चार व्हाइट प्लेट है एक वाइट कोटरा है।

ये एक मिट्टी की जगह है और यहां यहां पर बहुत से छोटे छोटे पेड़ लगाए गए हैं और पीछे तीन व्हाइट बिल्डिंग है व्हाइट कलर का।

ऊपर एक बैनर लगाया गया है कंसल्टिंग टाइम ऑफ़ सिसोर एंड ज्ञानेकोलॉजी है।

और वी_एस_एस मेडिकल में बुरला में हैं और ऊपर बहुत व्हेगेटी में पेड़ रखा गया है आसमान दिखाई दे रहा है नीले कलर --

ए_वी टायर करके यहां साइकल अ बहोत से साइकल खड़े हुए हैं साइकल रिपेयर्स मिक्सी स्टोव और--

अह फूल सजाया गया है बड़े बड़े पेड़ भी है और एक ब्लू कलर का अह ब्राउन कलर ये अह डाला है।

अ आर्टिफिशियल पेड़ लगाए गए हैं पीछे बहुत से बोर्ड लगाए गए हैं एक स्कूटी खड़ा हुआ है और एक अ पानी का--